ये भी मुझे बहत अच्छा संदर फोटो दिखाई दे रहा है बहत ही ने में देख पा रहा हु की--

दिख रहा है कि काफी मेंट छपा हुआ है कि इतने पेड़ भी लगे हुए है यहाँ पे--

इसकी बराबर में भी यहाँ पर काफी सारे पेड़ हो यहाँ पर--

ये भी मुझे बोहोत आछ्या सा अंदर फोटो दिखाई दे रहा है और इस चित्र में मै देख पा रहा हु की एंड ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दुकान दिखाई दे रही है कारपोरेशन के नाम से --

ये किसी इलेक्ट्र इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है जहा पे बिजली का आपको सारा सामान मिलता है और यहाँ पे दुकान के अंदर फैनस भी है पंखा सारे वायर्स भी बल्ब आप कुछ भी ले सकते --

किसी कर्मचारी के सामने खड़े हुए हैं और यहां पे--

ठीक फोटो में देख में पा रहा हु की मुझे एक बहोत अच्छा सानदार मुझे फोटो दिखाई देरा हैं।

और यहां पे ये मुझे लग रहा है कि यह शादीवादी के कार्य यहां पे फील्ड है पार्किंग है।

इस फोटो मे मै देख पा रहा हू एक बहोत ही अच्छा शॉप था मुझे फोटो दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे छोटे छोटे भी पेड़ दिखाई दे रहे है और एक बहत बड़ी लाल रंग की बिल्डिंग है।

ये भी मुझे एक बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दिया है और इस फोटो में मैं देख रहा हूं कि यहां पे मुझको अं एक बहोत बड़ी गाड़ी है जोकि किसी क्रेन ने उसको अपने ऊपर रख रखी है।

और इन सभीयों ने अह सफेद कपड़े कपड़े सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

और यहां पे सब के हाथ में माला के सब के गले में यहां पे फूलों की--

ये एक बहोत अच्छे फार्म का मुझे फोटो दिखाई दे रहा है और इस फोटो में देख पा रहा हु किसी कंप्यूटर कोचिंग लैब का फोटो है जहा पे उस लड़के के एक लड़का बैठ कर के कंप्यूटर लैपटॉप चला रहा है और यहाँ पे ये एक सीढ़ी लगी हुई है यहाँ पर लाइटे लगी हुई है बहोत अच्छी अच्छी शानदार ये कैंडल का फोटो है लड़के के एक लड़का बैठ कर के कंप्यूटर लैपटॉप चला रहा है लड़के के एक लड़का बैठ कर के कंप्यूटर लैपटॉप चला रहा है बिछी हुई है और यहाँ पर एक और बाइक ऑफ़ फ्लेक्स लगी हुई है काफी अच्छी शानदार यहाँ पर साफ सफाई--

एक मुझे भी बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और यहां पे मैं इस फोटो में देख पा रहा हूं कि किसी कंपनी इंडस्ट्री का फोटो जहां मुझे बहोत बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दी हुई है।

इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे किसी मुझे दुकान का फोटो दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर ग्रेट बेड के यहाँ पे कुछ बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पे डिब्बे में कुछ सामान रखा हुआ हैं।

और इस फोटो में में देख पा रहा हु के एक मुझे ए एयर कंडीसन दिखाई दे रही है जिसको ए _सी बोलते है।

या पे टंड बहोत से लोगो में गर्म हवा फेकने लगेगी।

और इस फोटो में मैं देख रहा हूं कि यहां पे मुझको एक--

एक मुझे बहुत अच्छी शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और यहां पे मैं इस फोटो में देख रहा हूं इसके अंदर मुझे एक बहुत अच्छी यहां पे रेलगाड़ी इंडियन रेलवे दिखाई दे रही है।

ये व्यू मुझे बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और यहां पे इस फोटो में आप देख रहे होंगे।

इसको यहां पे की पूजा की जाती है उसको--

और पर्दे भी यहां पे नीले लगे रहे शायद यहां पे लाइट भी नीली लगी होंगी--

और यहां पे अं शीशे भी लगे हुए हैं यहां पे और बहुत अच्छी अं यहां पे ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है इस जिम जिम क्लब के अं --

एक मुझे झाड़ू दिखाई दे रही है यहां पे और सारे तरफ यहां पे हरा ही हरा हो रहा है।

बैड भी हैं काफी आच्छा यहाँ पे सोफे भी डाले हुए हैं और एक यहाँ पे मिरर शीशा भी लगा हुआ हैं जो की लेडीज अपना उसमे खडी हो कर अपना मेकअप कर लेती हैं।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

बस इन्होने एक डिब्बा सा बना कर पानी भर रखा हैं गढ़ा बना कर।

इसका सायद इस गाड़ी ने कोई एक्सीडेंट किया होगा ले जाकर जब्त कर लेगी यहा पे इसको इस सडक के किनारे से ले जा रही है इसको चलाते हुए।

ऑ दुकान का फोटो दिखाई दे रहा है जिसपे बाला जी रेजिडेंसशन एंड एयरकंडीशनर के नाम से दुकान है ये।

यह पे मुझे गाडियों के यह पे टायर्स रखे हुए हें टायर्स की दूकान हैं यह पे बहुत बड़ा शोरूम हैं।

और पीछे यहां पर चाए बनाने का छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए है यहाँ पे पेड़ भी खड़े हुए है यहाँ पे सड़क का फोटो है --

ये भी मुझे बहोत आछ्या सा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर और इस फोटो में मै देख रहा हु की की यह चर्च का फोटो है जहा पे सभी व्यक्तियोंने सफ़ेद रंग के कपडे पहने हुए है जो चर्च के अंदर है जो की --

इस फोटो में देख पाओगे मुझे एक बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है जहा पर तिकी नगीना वाला चोली के नाम से बहोत बड़ी यहाँ पे शोरूम है और ये बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिस पर हरे रंग का कलर हो रखा है उसके बगल में एक और बिल्डिंग है यहाँ पर साइकिल भी खड़ी हुई है यहाँ पर मोटोकैक्ले भी यहाँ पर कुत्ता भी बैठा हुआ है और यहाँ पर ऑटो रिक्शा भी खड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझ को--

यह पे मुझे तीन चार बाइके दिखाई दे रही है। व्यक्ति यहां पे लाइन में खड़ा होकर अपने पैसे निकाल रहा है।